यहां पर बहुत सारे शीशे भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक आदमी भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

मेरे सामने एक रोड नजर आ रहा है रोड पर गाड़ीया भी दिखाई दे रही है गाड़ीयों कलर येलो कलर --

समान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

अह शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारी बाईकें भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है यहां पर चाय सुट्टा बार भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर --

गमले भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं गमले मे पौधे भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक घर भी नजर आ रहा है।

यहां पर एक एल_इ_डी भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

पर बहोत सारे गमले भी दिखाई दे रहे हैं।

परशुराम की फोटो भी दिखाई दे रही है।

मंदिर के पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। मंदिर की चोटी बहोत ही अच्छी दिखाई दे रही है। यहां पर कुछ बिजली के तार भी दिखाई--

यहां पर बहुत सारे शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

ग्राउंड में हरी घास भी दिखाई दे रही है ग्राउंड में कुछ फूल भी दिखाई दे रही है।

ग्राउंड में कुछ तार भी दिखाई दे रही हैं ग्राउंड में कुछ पेड़ भी दिखाई दे रही है।

यहां पर पहाड़ का कलर ब्लैक कलर का भी दिखाइ--